बुद्धा की मूर्ति में रखी हुई है।

यहां पर कुर्सियां और टेबल लगाए गए हैं।

एक फोन रखा हुआ है और एक तस्वीर भी रखी हुई है।

मंदिर के आगे बहोत सारी लाइट्स भी लगाई गई हैं।

ये एक दुकान है यहाँ पर कुछ साइकिले पड़ी हुई हैं।

ये एक कॉफी कैफे हैं यहां पर बहोत सुंदर सोफे और टेबल लगे हुएं हैं।

बहुत सुंदर टॉप शर्ट्स और फ्रॉक यहां पर --

सामने एक किला है और यहां एक--